मैदान में हरे भरे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

शटर के बाहर एक ब्लैक कलर की बाइक खड़ी हुई है।

लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

साइडों में पेड़ों के साइडों में गार्डेन्स बना हुआ है।

पेट्रोल पंप की छत व्हाइट कलर की है।

बिल्डिंग के बाहर साइट पर ग्रीन घास बिछी हुई है।

एक लेडिज गन्ने की पूजा कर रही है।

कोल्ड स्टोर के पास में ग्रीन घास दिखाई दे रही है।

बोट के ऊपर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।